इसमें एक इंसान लाल जैकेट पहने बाहर खड़ा है और एक इंसान चल रहा है ।

ये लोग अपने हाथ से पैर को छुए हुए हैं।

जमीन पे एक थाली रखी हुई है एक लड़की अपने हाँथ में त्रिशूल लिए खड़ी हुई है।

इस तस्वीर में तीन रेल पटरियां है। इस तस्वीर में लाल बिल्डिंग भी है।

इस तस्वीर में हमको एक इंसान दिख रहा है जो की फोटो खिचवा रहा है नीचे हेलमेट गिरी पड़ी हुई है ।

एक लड़का निचे खड़ा है जो मेले में जा रहा है।